दो बाइक लगा हुआ है एक बाइक के पास में एक आदमी बै खड़ा हुआ है और इधर उधर इधर पेड़ है।

मैरून कलर से पेंट किया हुआ है नीचे में व्हाइट कलर से पेंट --

बाउंड्री मारा हुआ है व्हाइट कलर से पेंट किया है खंबा है।

वाल है अगल बगल पेड़ पौधा है घर है व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ।

लगा हुआ है ताला भी लगा हुआ है।

एक नदी है जहांपे दो बाइक लगा हुआ है नदी के किनारे पहाड़ है।

नीचे साफ सुथरा जगह है कालीन और लाल और हर बीछा हुआ है ऊपर में फूल से सजा हुआ है मंदिर जैसा।

एक बड़ा सा पार्क है जहां पे कुआं की तरह गोल बनाया हुआ है।

साफ सुथरा जगह है हरा भरा घास है पेड़ पौधा है बगल में सोलर है और देखने में यह चीज बहुत सुंदर लग रहा है।

इधर भी दो कुर्सी है और वाइट कलर का बीछाया हुआ है भक भूक बर रहा है लाल--

एक बड़ा सा नदी है जहां पे टील्हा उल्हा सब है बालू है।

इसे पेंट किया हुआ है ऊपर में तीन चार में--

रखा हुआ है काउंटर पे एक लैपटॉप है और हल्दी वाला हार है।

खड़े हैं बोर्ड लगा हुआ है लाइट बल्ब पंखा सब लगा--

वे लोग टोपी पहने हुए हैं नीचे टाइल्स ल--

एक लड़की काम कर रही है वाइट कलर का काउंटर है।

टीना का है और इधर लकड़ी का है।

एक बाइक पे इधर बैलून दो बाहर लगा हुआ है और एक शेटर वाला दुकान--

बड़ा सा पेट्रोल पंप है जहां पे लाइट बर रहा है ऊपर से बुलू है।

वहां के चैनल के शटर लगा हुआ है और पांच व्यक्ति खड़ा है।

लड़का सब शर्ट पहना हुआ है एक ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ।

दो बाइक है इधर बोर्ड टंगा हुआ है।

आदमी को मुड़ी वाला बनाया हुआ है जहां पे एक व्यक्ति लाल टी शर्ट पहन के खड़ा है और बच्चा खेल रहा है।

अगल बगल पेड़ पौधा है लोहा का झुलुआ लगा हुआ है।